यहाँ घर बनने वाला है और अलग-अलग जगह पे पिलर दिया गया है जिससे घर मजबूती से बन सके पिल्लर होना बहुत जरुरी है घर में जिससे घर मजबुत बनता है।

ये मोर बहुत सुन्दर है और मोर हमारा राष्टीय पक्षी है ये ज्यादा ऊँचा उड़ नही सकती लेकिन यह बहुत सुन्दर दिखती है बारिश में इसको नाचना भी बहुत अच्छा लगता है इनको बारिश बहुत पसंद होता है और यह खुला वातावरण में रहना पसंद करते हैं।

यह एयरटेल का शोरूम है यहाँ एयरटेल की सिम मिल जाती है एयरटेल का सिम का नेटवर्क काफी अच्छा है लेकिन बहुत कोस्त्ली भी है।

यह एक चाट है जो की खाने में बहुत अच्छा लगता है चटपटा लगता है थोड़ी खट्टा भी लगता है चाट अक्सर लड्कियो को ज्यादा पसंद होता है और इसको देखने से मुह में पानी भी आ रहा है।

ये मंदिर हैं ये मंदिर हैं जो की साउथ का है इसका व्यू देख के लग रहा हैं कि यह साउथ का मंदिर हैं और इस मंदिर की मान्यता बहुत ज्यादा हैं ताकि यहाँ पे लोग काफी देखने को मिल रहे है जो पूजा कर --